नमस्कार दोस्तों plotting charts पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगेः
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
python 343 और ipython 510
इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि ipython कंसोल पर पाइथन कमांड्स कैसे चलाएं
फाइल्स से डेटा कैसे लोड करें और डेटा कैसे प्लॉट करें
यदि नहीं है तो इस वेबसाइट पर संबंधित पाइथन ट्यूटोरियल देखें
पहले ctrl+alt+t कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें टाइप करें ipython3 और एंटर दबाएं
pylab पैकेज आरंभ करें
एक पाई चार्ट एक वृत्तीय चार्ट है जिसे संख्यात्मक अनुपात को दर्शाने के लिए सेक्टरों में विभाजित किया गया है
pie फंक्शन के लिए सिंटैक्स निम्नानुसार हैः pie parentheses में values comma labels equal to labels
जहाँ वेल्यूज हैं प्लॉट किए जाने वाला डेटा और लेबल पाई चार्ट में प्रत्येक wedge के लिए लेबल
कंपनी a के लाभ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हुए पाई चार्ट प्लॉट करें
इस ट्यूटोरियल के कोड फाइल लिंक में उपलब्ध companyadatatxt फाइल से डेटा का उपयोग करें
डेटा फ़ाइल में प्रत्येक में वेल्यूज के सेट के साथ दो कॉलम्स हैं
पहला कॉलम वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है दूसरा कॉलम लाभ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है
स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए हमें पहले loadtxt कमांड का उपयोग करके फाइल से डेटा लोड करना होगा
terminal साफ करें
unpack equal to true > डेटा का transposed array रिटर्न करता है
प्लॉट विंडो को साफ करने के लिए टाइप करें clf open और close parentheses यदि पहले कुछ प्लॉट्स बनाए हैं
टाइप करें pieprofit comma labels equal to year एंटर दबाएं
ध्यान दें हमने फंक्शन pie में दो आर्ग्युमेंट्स पास किए
पहला वेल्यूज है जो हमारे मामले में profit है
दूसरा pie chart में उपयोग होने वाले labels का सेट है जो हमारे मामले में year है
यहाँ विडियो रोकें निम्न को हल करने का प्रयास करें और विडियो पुनः चलाएं
प्रत्येक wedges के लिए निम्न रंगों के साथ समान डेटा के साथ pie chart प्लॉट करें white red black magenta
yellow blue green cyan
yellow magenta और blue
संकेतः अपने ipython इंटरप्रेटर में pie question mark टाइप करने का प्रयास करें
प्रश्न 2 का हल
टाइप करें pie parentheses में profit comma labels equal to year comma colors equal to parentheses में color codes और एंटर दबाएं
यह पैरामीटर में निर्दिष्ट रंग में प्रत्येक wedge के साथ एक पाई चार्ट प्रदर्शित करेगा
बार चार्ट एक चार्ट है जिसमें आयताकार बार्स होते हैं जिनकी लंबाई उन वेल्यूज के अनुपातिक होती है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं
बार चार्ट के लिए सिंटैक्स है: bar parentheses में x comma y
कंपनी a के लाभ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हुए bar chart का प्लॉट करें
फाइल companyadatatxt से डेटा का उपयोग करें
प्रश्न 3 का हल
टाइप करें bar open और close parentheses year comma profit और एंटर दबाएं
यह कंपनी a के लाभ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करके बार चार्ट प्रदर्शित करेगा
इमेज में दिखाए गए अनुसार बार चार्ट को प्लॉट करें:
चार्ट के लिए डेटा फाइल companyadatatxt से लिया जा सकता है
संकेतः अपने ipython इंटरप्रेटर में bar question mark टाइप करने का प्रयास करें
प्रश्न 4 के लिए हल
टाइप करें bar open और close parentheses year comma profit comma fill equal to false comma hatch equal to single quotes में slanting line और एंटर दबाएं
यह एक बार चार्ट प्रदर्शित करेगा जो भरा नहीं है और 45 ° की तिरछी लाइन्स से हैच्ड है
matplotlib के बारे में मदद matplotlibsourceforgenet/contentshtml से ली जा सकती है
इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं
bar फंक्शन का उपयोग करके bar chart प्लॉट करना
और matplotlib ऑनलाइन हेल्प ऐक्सेस करना
यहाँ हल करने हेतु आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण वाले प्रश्न हैं
वर्टिकल लाइन हैचिंग के साथ बार चार्ट बनाने के लिए क्या कथन जारी किया जा सकता है
और उत्तर है bar x comma y comma fill is equal to false comma hatch is equal to a vertical line वर्टिकल लाइन हैचिंग के साथ बार चार्ट बनाने के लिए यह सही ऑप्शन है
कृपया अपनी समयबद्ध queries इस forum में post करें
कृपया पाइथन पर अपनी सामान्य क्वेरी इस फोरम में पोस्ट करें
fossee टीम tbc प्रोजेक्ट का संयोजन करती है
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है अधिक जानकारी के लिए कृपया इस साइट पर जाएं
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद